और इस दीवाल मैं ठाकुर गंज क्रिकेट क्लब के बारे मैं लिखा गया है और इस दीवाल के पीछे पेड़ है।